इस इमेज में मुझे एक वॉटर पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर मुझे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक दीवार दिख रही है दीवार पर मुझे बहुत सारी पिक्स नजर आ रही है जिन में से कुछ को अवोर्ड मिल रहा है कुछ अवॉर्ड दे रहे है।

इस इमेंज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहें हैं रोड पर कुछ लोग चल रहें हैं रोड पर वाहनें चल रही है एक स्कूटी चल रही है एक बाइक चल रही है।

इस इमेज में मुझे बहुत सारे डोर मेट दिखाई दे रहे हैं ये डोर मेट पर्पल येलो ग्रीन वाइट कलर के दिखाई दे रहे है म डोर मेंट्स के बगल में मुझे एक कम्बल दिखाई दे रहा है।